यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये चर्च है और चर्च का बड़ा सा गेट बनाया गया है और ऊपर सजावट किया गया है जिसमें ऊपर प्लस का आइकन भी बनाया हुआ है और नीचे डेकोरेट किया गया है बैलून से और बैलून का रंग बिरंगा है।

यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये सलून है और सैलुन में एक आदमी है जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसका दाढ़ी बना रहा है एक और आदमी और ये ब्लू --

यहां पे हम देख पा रहे हैं कि यह छठ है और छठ का घाट है ये और जहां पर बहुत सारी औरत है जो की पूजा कर रही है और के तारे टांगा हुआ है रखा हुआ है।

और उसपे कपड़ा बांधा हुआ है ऊपर से गमछी है और यहा पे बोहोत जादा भीड़ है पेड़ है लाइट है जल रहे हैं हर तरफ अंधेरा हुआ है।

और रेख बनाया हुआ है अलमीरा बनाया हुआ है और यहाँ पे काउंटर है जो शीशा का है और वहां पे काउंटर में भी बहुत सारा सामान रखा गया है लाइट्स जल रहे है।